यह एक यामाहा मोटरसाइकिल का शोरूम है।

बेड पर एक उजला चादर बिछाया हुआ है।

काउंटर में बहुत सारी मिठाई रखी हुई हैं।

ब्लू रंग का पिलर खड़ा है।

यह एक टू व्हीलर गाड़ी का शोरूम है।

इसके सामने एक सड़क गुजर रही है।

सामने उजला रंग का कार जा रहा --।

इसके सामने ब्लू कलर का शीशा लगा हुआ है।

प्लास्टिक का टूल रखा हुआ है।

यह एक लेडिस के रेडीमेड कपड़े की दुकान है।

दुकान में लेडिस का पुतला को सलवार पहनाया गया है।

स्कूल का खिड़की का रंग गुलाबी कलर है।

यह एक शादी का पंडाल है।

और फूल के माला से सजा हुआ है।

यह एक गुलाबी रंग से रंगा मकान है।

यह एक रेस्टोरेंट का हाल है।

दीवार पिला रंग से रंगा हुआ है।

चारों तरफ हरा भरा पेड़ है।

इसके चार पिलर दिखाई पड़ रहा है।

पानी के नीचे कंकड़ दिखाई पड़ रहा है।

बगल में सीमेंट का बेंच है।

कुछ जगह आबादी में खाली पड़ा है।

यह एक हरा भरा मैदान है।

नीचे चौदह पंद्रह सोलह सत्रह लिखा हुआ है।

दुखा में कहीं कहीं सी_सी_टी_वी कैमरे लगा हुआ है।

दुकान में बहुत सारे किताब है।

एक टोकरी में गोभी रखा हुआ है एक टोकरी में मिर्चा रखा हुआ--

इसमें एक उजाला रंग का चेयर लगा हुआ है।

रेस्टोरेंट में शीशे का घेरा दिया हुआ है।

किनारे में लोहे का जाली लगा हुआ है।

त्रिभुज आकार का बना हुआ--

दीवार पर बहुत सारे हरा भरा घास उग हुए हैं।